हिमालया इत्यादि कंपनी के प्रोडक्ट दिखाई दे रहें हैं।

यह तस्वीर एक किराने के दुकान की है जिसमें बहुत सारे कंपनी के प्रोडक्ट रखे हैं किराने दुकान का प्रयोग हम लोग रोजमर्रा के जीवन में करते हैं।

प्लेट में खाना बहुत अच्छी तरीके से परोसा गया है प्लेट में चावल दाल सब्जी सलाद विभिन्न प्रकार की खाने की सामग्री है।

यह तस्वीर एक विवाह भवन की है।

विवाह भवन का प्रयोग हम लोग किसी अनुष्ठान के लिए करते है जिसमे बोहोत सारे लोग आते हैं ।

यह तस्वीर एक स्कूल के क्लास रूम की दिखाई दे रही है इसमें बहुत सारे बेंच लगे हुए हैं।

यह तस्वीर एक मछली के दुकान की है।